एल.जी. के टी.वी. सब छय बारा तेरा सब टी.वी. सब छय।

लाइट बार रहलै | एगो आदमी बइठल छै और बहुत सारा समन सब छै ।

और रेक में भी लाग राखल छै और एने सौ रुपया फोनपे करे के छूट भी छै।

पंखा लागल छै छत पर लाइट भी लागल छै ।

अय में बहुत सारा ओन्ने पानी छय रोड भी छय बीच में।